टेबुल बेंच उंच लगा हुआ है आगे लड़कियां है पीछे लड़के है बैठे हुए है।

उस तरफ कोई बस्ती उसती हो।

ये घर बनता हुआ नजर आ रहा है।

एक ने व्हाइट कलर का टी-शर्ट और एक ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है।

ये जो है सोफ़ा है और सोफ़ा के साथ जो लगा हुआ रहता है दो ठो कुर्सी।

तीन मोटर साइकिल है उधर घर बनाया हुआ है।

उसके अंदर भी है वो पुतला।

अ यहाँ पे और एक पिक्चर मे दो-एक लड़का एक लड़की शॉपिंग करके पिक्चर मे फ़ोटो घीच रहे है।

और तीनो लगता है एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे है ये कोई दुकान है।

और गाछ-उछ भी है पीछे में एक पत्ता जैसे की है वहाँ पे गाछ के बगल में और यहाँ ग्रिल जैसे कुछ रखा हुआ है।